सामने कुछ व्यक्ति खड़े हैं और कुछ बिजली की तार भी दिखाई दे रही हैं।

साइडों में कुछ लोहे की खंभे खड़े हैं जिन पर लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ प्लेट दिखाई दे रही है और कुछ टेबल और कुर्सियां दिखाई दे रही है।

इस फोटो के अंदर एक बड़ी सी पेंटिंग्स और गिफ्ट की दुकान दिखाई गई है।

इस फोटो के अंदर एक बिल्डिंग दिखाई गई है जिस पर एक गेट लगा हुआ है।

गेट पर रॉयल आर्ट लिखा हुआ है और कुछ बल्ब जल रहे हैं।

सामने कुछ शैंपू और कुछ मेहंदी के पत्ते और चिप्स लटके हुए हैं।

इस फोटो के अंदर सामने एक साइकिल की दुकान दिखाइए गई है।

इस फोटो के अंदर सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गई है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है जो लकड़ी की है।

इस फोटो के अंदर एक दुकान दिखाई गई है जिसमें ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो नीले कलर का है।

इस बोर्ड पर चाणक्य लिखा हुआ है और कुछ बिजली की तार दिखाई दे रही है।

लड़की के हाथ में एक मेडल दिखाई दे रहा है और पीछे दीवारों पर पं पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे छोटी छोटी बजरी पड़ी है और सामने की तरफ बारह दो दो हजार पच्चीस लिखा हुआ है।

और नीचे कुछ मिट्टी पड़ी हुई है और सीमेंट दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ कुछ पत्ते दिखाए गए हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं।

सामने एक पर्दा लगा हुआ है और एक फ्रिज में कुछ प्लग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें सामने रैक बनी हुई हैं जिनमें पंखे और प्रेस और केतली रखी हुई हैं।

नीचे कुछ पत्ते पड़े हुए हैं और छोटी छोटी सी बजरी पड़ी हुई है।

सामने कुछ ए_सी की दिखाई दे रही है और नीचे कुछ दरवाजे दिखाई दे रहे--

यहां पर तीन तरह की शर्ट रखी हुई है एक हरी है और एक सफेद सी है और एक सामने कुछ लाल से कलर की है।

और पीछे कुछ पर्दे हैं जो पाइपो में लगे हुए हैं कुछ पीले और कुछ सफेद हैं।

बीच में कुछ व्यक्ति खड़े हैं और एक व्यक्ति साइकल पर बैठा हुआ है।

पीछे की साइड में कुछ पेड़ दिखाएं गए हैं और एक घर और दिखाया गया है।

ऊपर की तरफ बिजली के स्विच लगे हुए हैं जिनमें कुछ प्लग लगे हुए हैं।

इस पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हैं और कुछ खड़े हैं।

साइड में एक पेड़ दिखाया गया है और कुछ गुब्बारे दिखाए गए हैं।

इसमें कुछ मजदूर दिखाए गए हैं जिन्होंने बनियान पहनी हुई है।

नीचे कुछ लकड़ी की टेकी पड़ी हुई है सामने एक ढेर पड़ा है मिट्टी का।

ऊपर कुछ तार दिखाई गई है बिजली की और एक बिल्डिंग है लाल कलर की है।

सामने की तरफ लकड़ी की कुछ टोकरी टंगी हुई हैं और वो टोकरी लकड़ी के एक बांस से टंगी हुई हैं।